जहां पर लोग अपने आवश्यकता अनुसार इन चीजों को खरीदते हैं|

यह धोबिया घाट पर स्थित जिम का चित्र है। यहाँ पर लोग अपने सुबह के व्यायाम करने के लिए आते हैं और अपने शरीर को हुष्ट पुष्ट तथा सुदृढ़ बनाने के लिए यहाँ पर अ- व्यायाम करते हैं। यहाँ पर एक मशीन रखी गई है जिससे हम लोग लेग का एक्सरसाइज करते हैं।